लेफ्ट साइड कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं।

और कुछ फ्लावरस भी दिख रहे हैं।

इस क्षेत्र में पुरानी बिल्डिंग नजर आ रही है।

यह एक सब्जी मुंडी नजर आ रही है।

और रोड भी दिख रही है और रेलिंग भी दिख रही है।

जो फुक सेंटर की है।

विंडो भी दिख रही है जिस परदा डला हुआ है।

यह मल्टी क्रीम कलर की पेंट की गई है।

बालकनी में इस तस्वीर में कपड़े सूख रहे हैं।

और एक गेट भी नजर आ रहा है कुछ लाइट्स भी दिख रही हैं।

और बहुत सारे बैनर भी लगे हैं।

एक तीन शर्ट की दुकान नजर आ रही है।

इस चित्र में एक रोड नजर आ रही है जो --

कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

एक मेन गेट भी नजर आ रहा है।

और एक चेयर और टेबल भी दिखाई दे रही है।

और कुछ लोग भी दिख रहे हैं स्टील की रेलिंग लगी हुई है और पैर भी नजर आ रही हैं।

और एक दो पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

पानी के किनारे रेलिंग लगी हुई हैं।

और पीछे पानी भी नजर आ रहा है।